कार्यालय के बीच में बोहोत सारे लोग खड़े हुए है।

छोटे-छोटे हरे-भरे पेड़-पौंधो से सजाया गया है। जिसे एक गोले आकार के पौंधो से सजाया गया है।

यह एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय है जिसके आगे बहुत एक दो लोग दिखाई दे रहें हैं अधीक्षक कार्यालय के आगे --

यह एक फिजियोथेरेपी सेंटर है जो खाली दिखाई दे रहे है।

यह एक बगवान का दृश्य है जहाँ सुंदर-सुंदर पौधे लगाए गए हैं।

यहाँ पे बहोत सारे फूल के पौधे लगाए गए हैं। फूलों का रंग उजला है नीला है और ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। फूलों के पौधे का पत्ता हरा दिखाई दे रहा है।

यह एक मंदिर का दृश्य है जिसके आगे बहुत सारे भक्त लोग बैठे हुए हैं।